ये एक स्टेशन है स्टेशन के ऊपर पटरी है पटरी के ऊपर गिट्टी डली है सामने एक जाली है जाली का कलर येलो और ग्रीन है एक घर है घर के ऊपर दो टंकी रखी है टंकी का कलर ब्लैक है।

उसके ऊपर बैनर लगा है बैनर का कलर येलो है पास में थर्मोकोल के पुस्ते रखे हुए हैं।

ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो बहुत अच्छी बनी है वो काँचों और सीमेंट के साथ बनी है बाहर टाइल्स लगे है।

पा आसपास लाइटे जल रही है और आसपास बहुत सारे घर है लाइटो का कलर गोल्डन है और छतरी वाली लाइट लगी है।